सेलून के बाहर बहोत सारी रेड कुर्सियां राखी हुई है कुर्सियों के नीचे ग्रीन कारपेट बिछा हुआ है।

ब्रिज के नीचे नदी दिख रही है आसमान सफ़ेद और नीले कलर का हैं।

सुलभ शौचालय का गेट खुला हुआ है और गेट ब्लैक कलर का है शौचालय ब्लू और येलो कलर में है।

लड़की के पीछे से एक अंकल निकल के जा रहै है अंकल ने धोती और टी शर्ट पहनी है टी शर्ट ऑरेंज कलर की है।

लेफ्ट साइड में एक गोल चकरा बना हुआ है जो सफ़ेद कलर का है और उसपे कुछ लिखा हुआ है।

बुक्स के बण्डल बहुत सारे बने रखे हुए है सामने पेंस भी रखे हैं।

सलून अ वाइट और ब्लू कलर के बलून से सजा हुआ है सलून के बाहर बहुत सारी चेयर्स रखी हुई है।

सामने एक घर बना हुआ हैं घर ओ ऑरेंज और वाइट कलर का हैं।

पीछे बहोत सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए है।

प्रोग्राम के लिए जगह को सजाया हुआ हैं।

बाहर की तरफ कुर्सियां लगी हुई है जो लाल कलर की है।

सामने एक टेबल रखी है जिसपे दो तीन रेसिस्टर रखे हुए है।

गुलाबी कलर के फूलो से नीचे डिज़ाइन बनी हुई है स्टेज के ऊपर सफ़ेद कलर का कपडा बिछा हुआ है ऊपर छतरी भी है।